कुछ ए एक बड़ा सा लाठी में आग आग लेके गुम गुम रहा है एक बड़ा सा नअंनअं नीला कुछ रंग बिरंगे कड बड़ा सा एक कार्डबोर्ड पकड़के गुम रहा है।

और एक बोर्ड जिसमें मे आई हेल्प यू लिखा हुआ है।

और एक धूर पे पंखा पंखा लोग भी दिखाई पड़ रहा है।

तस्वीर में बड़ा सा मैदान दिखाई पा रहा है जिसमें लोग खेल रहा हैं साइड में बच्चियां भी खेल रही हैं एक बहोत बड़ा सा टावर दिखाई पा रहा है तीन टावर दिखाई पा रहा है दूर पे एक गाड़ी आ रहा है।

तस्वीर में हमको सामने में एक बड़ा सा दुकान दिखाई पा रहा है जो दो हिस्से में रखा हुआ है एक होटल साइड होटल है।

काला कलर का एक छोता सा चेयर वहां रखा हुआ है उसके वहां में घड़ी दिखाई पर रहा है पर्दा दिखाई पर रहा है ऊपर बैक फैन और साइड में दो चेयर दिखाई पर रहा जिसमें एक आदमी बैता हुआ--

बिजली का बहुत बड़ा खम्मा दिखाइ पड़--

तस्वीर में हमको बाइक्स दिखाई पड़ रहा है अच्छे कार्स भी दिखाई पड़ रहे हैं और बहोत पुराना पुराना हुआ कार भी जो नहीं चल सकने वाला कार भी दिखाई पड़ रहा है।

पूटिस और गारीस भी दिखाई पा राहा है।

पीछे में बहुत अच्छा सब प्रोफेसर्स टीचर्स ये बैठे हुए हैं।

वैसे ली उन लोगों का लीडर आगे खड़ा हुआ है और पीछे पूरा ड्रम से ड्रम से सबके साथ बैठा हुआ है।

तस्वीर में हम को एक बरा बड़ा सा राइनो राइनो सिरोज़ दिखाई पड़ रहा है जिसके सींग से पानी निकल रहा है।

दुकान के काउंटर आगे पे है एक ब्लू कलर का डस्टबिन और साइकिल का साइकिल का परछाई दिखाई पा रहा है।

इस तस्वीर में गोल सा हमें एक बड़ा दो बड़ा सा पेड़ दिखाई पा रहा--